बहोत सारे लोग हैं जो नदी के किनारे खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है ओ नदी के किनारे खड़े होकर पूजा कर रहे हैं।

गोल गोल टेबल रखा हुआ है। जहाँ पे कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

जहां पे कई तरह की स्लाइडिंग्स बनी हुई है।

जिसका नाम बी.एन पब्लिक स्कूल है।

जहां पे बोहोत सारे बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं।

जहा पे बहुत सारे प्राइजेज रखी हुई हैं।

ऊपर खूब अच्छा लाइट लगा हुआ है।

ए.टी.एम. मशीन के बगल में एक डस्टबिन भी रखा हुआ है।

और बहोत सारे लोग नीचे खड़े होके वेट कर रहे है।

जो कि जीन्स और व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखा है।

जो कि ब्लू कलर की शर्ट पहने हुआ है।